एक औरत बच्चे को लेकर मार्केट में खड़ी है।

और थोड़ा सा सूरज भी चमकता दिखाई दे रहा है।

एक पीले रंग की टी शर्ट में आदमी खड़ा है तथा पीला पर्दा है।

यह फोन एसेसरी की दुकान है इसमें दो आदमी खड़े हुए हैं।

और इसके बाहर दो बाइक और एक साइकिल खड़ी है य --

और इसकी हालत बहुत खराब लग रही है एक --

एक आदमी स्कूटी पर खड़ा--

ये टी शर्ट पहनी खड़ा है और बड़े बड़े पत्थर --

फव्वारा हैं महल में बहुत खिड़कियां हैं।

इसमें सामने इंडियल ऑयल लिखा हुआ है।

यहां एक आदमी भी खड़ा है सिलेंडर को लिये हुए --

तार का खंबा भी लगा हुआ--